सब लड़कियों ने रिबन बाने हुए हैं।

यहां बहुत सारी लाइटें लगी हैं।

जिसके अंदर एक नाव खड़ी दिखाई दे रही है।

यहाँ एक बाल्टी भी रखी हुई है।

यह दुकान बहुत सजी हुई है।

यहाँ कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं।

जिसमें दो आदमी खड़े हैं एक घड़ी लगी हुई है।

और बहुत सारी मोटरसाइकिलें भी रखी हुई है।

और यह पौधे हरे कलर के दिखाई दे रहे हैं यह पौधे मिट्टी में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ और का आसमान बहुत साफ दिखाई दे रहा है।

यहां एक दुकान दिखाई दे रही है उस दुकान के बाजू में--

चारों तरफ से पन्नियों से पेक है ।

यहाँ एक रोड दिखाई दे रहा है।

यह एक दुकान दिखाई दे रही है।

इसमें एक पंखा लगा हुआ है।

एक शौचालय भी दिखाई दे रहा है।

दुकान दिखाई दे रही है। यहां बहुत सारे--